ये एक सरकारी ट्यूशन है और यहाँ पर बच्चे बहुत पढ़ते हैं।

और यहां पे एक टेंपू और एक बड़ी गाड़ी और एक बाइक है।

ये एक विशाल पेड़ है यहाँ खजूर का पेड़ है।

यहाँ पे चर्च ब की मंदिर ई है।

यहाँ स स सजावट बढ़िया है | फूल लगे हैं | टेबल रखी है कैमरा रखा है लाइट है।

और अलग-अलग तरह के यहा झंडे गड़े हैं।

नीचे एक पैरदान रखा हुआ है।

और इस ट्रैड पे बहुत सारे आदमी जा रहे हैं |

यहाँ डेरी मिल्क है और ओरिओ बिस्कुट है |